यह एक ऐसा घर है जो शादीयों के लिए रेंट पर दिया जाता है। इस इसलिए इस घर का नाम श्री राम मेरिज होम रखा गया है।

देखने में यह एक ए सकूल या कॉलेज या मेडिकल जैसा लग रहा है। यहाँ के कमरो का साइज एक जैसा है।

अपना काम आसानी से करते है यहाँ की सिटींग व्यवस्था बोहोत अच्छी है।

और उसके लिए यहाँ पर टिकटे भी बुक की जाती है जिस तरह से सिनेमा घर के लिए टिकटे बुक की जाती है उसी प्रकार यह भी शो के लिए टिकटे बुक की जाती हैं।

जहाँ पर वह अपनी धर्म का प्रचार करते है पाठ करते है। यह उनके लिए सर्वप्रिय है।

देखने में यह एक बड़ा स्टेशन प्रतीत हो रहा है यहाँ पर तीन चार रेलवे पटरी बिछी हुई है।